ये औरतों की सस ज्वेलरी की दुकान है यहाँ बहुत सारे झमके टंगे हुए हैं।

जहां पे एक मूर्ति रखी है उसके ऊपर फूल चढ़ाए गए हैं।

अंदर केबिन में दो कुर्सियाँ रखी हैं लैपटॉप रखा है केबिन बिल्कुल खाली है ऊपर लाइटिंग लगी है यहाँ ब्लैक सोफे रखे हुए हैं लोगों के वेटिंग रूम के लिए --

बिल्कुल हरी भरी घास नहीं है सुखे पत्ते डले हुए है किसी कारण मीटर लगा हुआ है सामने--

ये फोर जी मोबाइल की दुकान है।

फॉर्मल में भी है साफ सुथरे सीए साधे कोई डिजाइन नहीं फूलों में भी है।

ऑटो की छत पीली है मोटो हरा है अंकल भी पीला मास्क लगा के आए हैं इत्तेफाक देखो --

भईया नीला शर्ट पेहने हैं तो उनके पीछे नीला ऑटो खड़ा हुआ है ई रिक्शा है ये।

मेवाड़ प्रेम बैठा हुआ आइसक्रीम बेच रहा है भैया है स्कूटी बैठे हैं जा रहे हैं दो बाइक बैठे हुए हैं सामने बाजार लगा हुआ है कपड़ों का।

तीन चार मैडमें बैठी हुई हैं साइड में एक अंकल दरवाज़े के बाहर खड़े हुए हैं।

और एक अंकल दौड़के के जा रहे हैं अंदर एक लाल डिब्बा रखा हुआ है पेड़ पौधे लगे--

यहाँ पे दो टेंपो खड़े हैं नो एंट्री --